यहाँ माड़ माड़ मोड़ रोड गया में सथित है।

शहर बोध गया है।

ऐसे उसके उसके ऊपर डिज़ाइन है। गेट में एक आधा दूर खिलेगा और दो गो किनारों से भी गेट खोलने के लिए जगह दिया ह ।

ऐसे उसके उसके ऊपर डिज़ाइन है। गेट में एक आधा दूर खिलेगा और दो गो किनारों से भी गेट खोलने के लिए जगह दिया ह ।